काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना-अपना समान ले रखा है।

जो की बहुत सुंदर है और ये मंदिर बहुत ही --

पानी के वो मयूर जग भी यहाँ पे रखे हुए हैं।

और ये काफी बड़ा घर है। निचे ए ए शटर भी लगा हुआ है।

और यहाँ पे काफी छोटी छोटी से मडी भरे दिखाई दे रही है ये |

के और साइड में घास फूस पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं |

वायर वगैरा भी दिखाई दे --

वहाँ पेड़ भी है साइड में रात का समय है ।